और ये देखिए ये जो है बहुत अच्छी ब्लेक रेड ग्रीन तीन कलर से कॉम्बिनेशन ये चीज़ बने हुए है।

बहुत अच्छी यहाँ आगे कुछ अस्पताल वगैरह लग रहे है कुछ तो होंगे जरूर हमें मालूम नहीं आदमी को भी देख रहे हैं उसी से निकल रहे हैं जा रहे हैं बहुत ही अच्छे जगह --

बहुत अच्छे और खेल भी रहे है कुछ लोग और देखने वाले बहुत लोग हैं मेच हो रहा है फूल वुल लगे हुए है और एक बांस भी खड़ा है बेहतरीन बहुत--

और यहाँ पर देखिए लग रहा है जैसे की ये शादी का माहौल है ये जो है शादी बहुत बेहतरीन जगह से हो रही है।

यहाँ पे किस चीज का परचार हो रहा है गाय की या पशु आहार केंद्र| मतलब माल - जाल के लिए कुछ अंदर में --

उधर खाली जगह में कुछ आदमी वगेरह रोड से जा रहे है कुछ उधर भी यही है बाकी सब ठीक है जो हरियाली भी है।

और एक माला पहनी हुई है और एक जो है दो माला पहनी हुई है| बाकी बहुत अच्छी जगह फुल-वुल लगे हुए हैं बहुत बेहतरीन उधर कुछ लोग बैठे--